ढाबा दिख रहा है जहां पर यह लकड़ियों से बना है वहां पर बहुत से पेड़ भी दिख रहे है कुंडियो मे पेड़ लगे है ऊपर --

यह कोई फंक्शन लग रहा है आगे में--